बहोत सारे लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है इस गाड़ी के पास एक पुलिस वाला खड़ा हुआ है तथा कुछ लोग खड़े हुए हैं जो बातें कर रहे हैं आपस--

आधी सब्जियां रखी हुई है और इसमें एक इंसान खड़ा हुआ है जिसके कंध पर एक बैग है।